इस तस्वीर में पार्क को दर्शाया गया है पीछे की तरफ में--

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा हॉल नजर आ रहा है जिसके अंदर अ टेबल कुर्सियां लगी हुई है और दो व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे नज़र आ रहा है ये एक कोई मेला या धार्मिक स्थान जो कि अलग अलग लाइटों से प्रकार के सजाया गया है यह कोई --

मेज पर ऊपर क्यू_आर ऑनलाइन क्यू_आर कोड भी रखा गया है और--

ये एक होटल या रेस्टोरेंट लग रहा है जिसके ऊपर हैं।

जो कि बड़ी लाइट नजर आ रही है जो कि टोर जो कि बड़ी-बड़ी ऊंचाई पर है और पीछे की तरफ पेड़ पौधे भी बड़े सने घने --

पानी की टंकी लगी हुई है और बाहर की तरफ में गाड़ी भी खड़ी हुई है ये गत्ते की फैक्ट्री लग रही है बाहर की तरफ गत्ते के सेट रखे गए हैं जिसके दो --

बीकानेर चौपाटी का दृश्य नजर आ रहा है जिसमें नावे चल रही है पीछे की तरह में बड़े बड़े पेड़ है जोकि लाइटिंग डेकोरेट किए गए है और --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं कि पीछे की तरफ में ये लाइट डेकोरेशन सिस्टम किया गया है स्टेज लगाया गया य्ए कोई फैमिली फंक्शन लग रहा है।

बड़ा ही विशाल व और पास में लेडीज ज जा रही है ठेला भी लगाया गया है और जिसमें इत्र कारपीया कृपया होइ --